इस फोटो में एक रोड है रोड के साइड में एक ऑटो और एक छोटी सी दुकान।

इस फोटो में श्री द्वारकाधीश वस्त्रालय है।

इस फोटो में एक रथ है इस रथ के चारों तरफ बहुत सारे लोग जो खड़े हुए हैं।

ग्रॉसरी शॉप है इस ग्रॉसरी शॉप में बहुत सारे रैक बने हुए हैं जिनमें बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

इस फोटो में एक ब्लैक कलर की केक है इस केक के साइड साइड में बहोत सारे ओरियो बिस्किट लगे हुए हैं।

उसके साइड में टेबल है।

इसके साइड में बहोत सारे बोरे चावल की बोरियां आटा की बोरियां रखी हुई है और इसके रैक पे बहोत सारे शैंपू डेटॉल पाउडर रखा हुआ है।

इसके फर्श पे दो डोर मेट रखे हुए हैं।

इस फोटो में एक टेबल है इस टेबल के ऊपर बहोत सारे मेडल रखे हुए हैं।

बलूंन्स के साइड में टेडी बियर भी रखा हुआ है।

इस फोटो में तीन लोग हैं जो बोटिंग कर रहे हैं इसके दूसरी तरफ एक और नाव है जिसमें कुछ लोग बोटिंग कर रहे हैं।

टेबल्स पे प्लेट्स और स्पून्स रखी हुए हैं और इसके साइड में एक मूर्ति रखी हुई है।

जिसके साइड साइड में दो फ्लावर पॉट रखे गए हैं और एक मोमबत्ती रखी गई है।

इस रूम के साइड में एक विंडो है।